ऑटो दिखा रहा है पीछे बस पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे है यहाँ --

यहाँ पे गलियेरी जैसे दिख रहा है बीच में मिलिट्री ग्रीन और साइड - साइड में ब्राउन - ब्राउन सा है ।

कुर्सी छोटा है जो व्हाइट कलर का पेंट किया हुआ है ये कुर्सी भी छोटा है जो रानी कलर से पेंट किया हुआ है।

सामने मे दो तीन रूम्स दिख रहे हैं |

बड़ा और छोटा कुछ पेड़ पौधा वृक्ष ढेर सारे

साइड में बहुत सारे बीच बहुत सारे दिख रहे हैं | कुछ बंधा हुआ मंदिर के

यहाँ पे यहाँ पे स्टेज बना हुआ है और ऊंची सीढ़ी लगा हुआ है ।

सामने मे घर या दुकान जैसा दिख रहा है ।

और यहाँ पे बड़ा बॉउंड्री बना हुआ है और एक साइड में गेट है लोहे का गेट पे कुछ --

लिखा हुआ जो ऊपर

और यहाँ पे दो लेडीज जेंट्स बैठे हुए हैं ।

ये यहाँ पे कार्यालय या स्कूल रेट बना हुआ है ।

लेडीज बैठी है और जेंट्स कुछ लिख रहे है ।

बाहर कुछ लोग हैं जो यहाँ पे खरीदी पहनती

यहाँ पे एक कार्यालय की स्कूल है ।

टूटा फूटा घर है यहाँ पे --